एक बाइक दिख रही है एक बड़ा सा गेट दिख रहा है दो पिलर दिख रहे है एक साइड में अशोक का पेड़ दिख रहा है।

इस इमेज हमको एक खेतों का दृश्य दिखाया गया है पीछे की तरफ --

एक पेड़ भी है और पीछे की तरफ भी एक पेड़ है।

पीछे की तरफ चैन लटकी हुई दिख रही है।

जिसके अंदर बहोत सारी मशीन रखी हुई है।

पराठों का दृश्य दिखाया गया है जोकि दूर से दिखने पर मेथी के पराठे हैं।

हमको एक ठेले का दृश्य दिखाया गया है।

और पीछे के साइड तीन बाइक दिखाई दे रही है।

एक नीले कलर का गेट है बड़ा सा।